यहाँ एक पुराना मकान है मकान के ऊपर कैंटीन लिखा है।

येलो बिल्डिंग के बाजू में एक ग्रे कलर के बिल्डिंग हैं।

हॉस्पिटल के नीचे पार्किंग एरिया है। पार्किंग में टू व्हीलर पार्क है।

नीचे सीढ़ी के पास एक लेडी बैठी है।

यहां एक रोड है रोड है के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

ये एक कैफे है कैफे का नाम चाय शुट्टा बार है।

यहां एक आदमी खड़ा है आदमी ने ग्रे कलर की शर्ट पहनी है।

लाइट के सामने एक एक्सरसाइज एरिया है।

वो कलर्स के ऊपर न्यू क्रिस्टल लिखा है।

पोस्ट के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नासिक लिखा हुआ है।

ये एक शॉपिंग सेंटर है इसमें छोटे बच्चों के खिलौने और कपड़े हैं।

कॉलेज के दूसरे बोर्ड पे एन_सी_सी लिखा हुआ है।

सामने शेल्फ पे समान रखे हुए हैं।

सैमसंग काउंटर पे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है।

पे शाह के_एम लॉ कॉलेज फुलसाद एनुअल फंक्शन लिखा हुआ है।

रेस्टोरेंट के बाउंड्री पे गेट लगे हैं गेट पे दो ग्रीन कलर के लाइट है।

ये एक ऑफिस है ऑफिस में बड़ा सा टेबल है।

ग्राउंड में एक तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग है वाइट कलर की।

यहां खाने की स्टॉल्स है राइट साइड के स्टॉल पे पर है।

सामने स्टेज पे तीन बड़े बड़े टेबल रखे हैं।

टेबल के सामने एक व्हाइट कलर का बड़ा सा वाशिंग मशीन वाशिंग मशीन के ऊपर एक बड़ी ए_सी है।

बिल्डिंग का कलर ऑरेंज है और ब्लू कलर की खिड़की और दरवाजे हैं।

मंदिर के एंट्रेंस पे दोनों तरफ एक एक मोर है।

ऑडिटोरियम के लेफ्ट साइड पे ऊपर एक ए_सी लगा हुआ है।